यहां पर कुछ मशीनें रखी है ये मशीन की है।

यहां पर पानी बह रहा है इस चित्र में कुछ पेड़ पौधे हैं।

और इस चित्र में नीले कलर का गेट है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी दुकान का है।

और दो कुर्सियां रखी हैं। इंस इन सोफों में दो तकिए पड़े हैं।

इन मेज के ऊपर खाने का सामान रखा हुआ है।

इस चित्र में एक बेड है जिस पर एक महिला लौटी हुई है।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

यहां पर बच्चों के खेल खिलौने रखे हैं।

यह एक चित्र है एक इस चित्र में घर है।

यह दुकान प्रेस और पंखे की है यहां पर बहुत सारा सामान रखा है।

जहां पर कुछ व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियो की चंखा संख्या छे है।

इस व्यक्ति ने काले कलर के कपडे पहन रखे हैं।

ये जिम में दो पंखे लटके हैं जिनका रंग काला है।

यहां पर पत्थर पड़े हैं और कुछ पेडे खड़े हैं।

एक चित्र में एक महिला है और एक छोटा बच्चा।